यह काफी हरे छोटे - छोटे पेड़ पौधे हैं। यह देखने में काफी ही खूबसूरत है।

ये बोहोत बड़ी शॉप की दुकान है। यहाँ पर काफी बड़ी दुकान है और यहाँ पर काफी ही सामान मिलती है। लोग यहाँ आकर सामान खरीदते हैं।

यह एक जिम की मशीन है। यहाँ पर बोहोत सारे जिम करने की मशीने रखी गयी हैं। लोग यहाँ आ कर जिम करते हैं।

जो इस तराज़ू में सामान को तुलवाते है। और बेचते --

और यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। ये उन लोगो की किताब खरीद रहे हैं।

इस वाटरपार्क में फिसलकर इस स्विमिंगपुल में तैरते हैं और खेलते हैं। यह स्विंगपूल काफी ही अच्छा है और साफ़ सु --